यहां पर एक बहोत बड़ा सा--

झूला भी लगा हुआ है।

यहां पर एक ट्रैक्टर भी खड़ा है और एक घर भी है।